जोकि यहां पर एग्जामिन करने वाले डॉक्टर के लिए भी एक चेयर बिछी हुई है।

यह एक बच्चों के हॉस्पिटल --

यहां पर लोगो को प्रशिक्षित किया जाता है।

काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह रोहित चाहे सेण्टर का--

स्टाल है यहां पर आपको चाय और कॉफी --

यहां पर एक बहुत ही बड़ी विशाल नदी है।

जिसमें आप बोटिंग का इंज्वॉय कर सकते हो।

यह एक संस्था है जो कि--

फुटबॉल है। यहां पर सभी प्रकार के गेम के कोचिंग कराई जाती है।

इन कंपार्टमेंटस पर अलग अलग बुकशेल्फ के लिए परिचियां भी लगी हुई हैं।

यहां पर एक छोटी सी नदी भी है जिस पे हम सीढ़ियों के रास्ते जा सकते हैं यहां पर एक बोर्ड भी है।

ऊंचे-ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं। यहां पर आप अपनी फैमिली के साथ भी--

सामने एक बहुत बड़ा टै ट्रक भी खड़ा हुआ है और एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है।

यहां पर काफी सुंदर बैलून से और मिक्की माउस से डेकोरेशन की गई हैं यहां पर जो टॉफी रखी है वो स्पैशल कुछ डिजाइन में लग रही है।